यहाँ ई घर है यह घर प्राचीन काल का है इस घर के --

ए भाग लाल हैं एवं चोंच लम्बी है।

शिक्षा ग्रहण करते है। यहाँ पर छोटे बड़े सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते है। तथा मास्टर यहां पढाते --

फुटबॉल आदि खेलते --

यह महावीर मंदिर है। यह हमारे जमुई जीले में है। यह मंदिर काफी बड़ा एवं आकर्षक है। यहाँ पर आदमी दर्शन के लिए आते है।